और तिरंगा एक पाइप में लगा हुआ है। तिरंगे का रंग यहाँ पर --

मुझे यहाँ पर एक चर्च दिख रहा है। यहाँ पर ईशा मसिह उसमे टंगे हुऐ हैं और प्लस आइकॉन बना हुआ है। यहाँ पर बहोत सारे फूल रंग-बिरंगे दिख रहे हैं। यहाँ पर --

हाँ मुझे यहाँ पर एक बडा सा बरामदा टाइप का दिख रहा और यहाँ पर दीवाल बनी हुई है। दीवाल पे --

अ यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है जैसे औरत की है और उसने हाथ भी जोड़ा हुआ है और यहाँ पर बहोत सारी मुर्तियाँ बनाई गई है जो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और --

मुझे यहाँ पर मछली मार्केट दिख रहा है। कई वैराइटी की मछलियाँ दिख रही हैं जोकि मछलियाँ दिख रही हैं डब्बे में और बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं। रंग-बिरंगे कपडे पहने हुए।

मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर एक मास्टरजी बैठे हुऐ हैं। यहाँ पर बीच में मेज रखा हुआ है। यहाँ पर वे लोग वीणा लिए हुऐ हैं हाथ में --

मुझे यहाँ पर एक अ दिखाई दे रहा है गोल लम्बा चबूतरा सा बना हुआ। उसके ऊपर छत भी बनी हुई है। ऊपर गुम्बद सा बना हुआ है। यहाँ पर --

यहाँ पर मुझे एक परसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बनाया गया है। --

ये कोई संतरा या और फिर कोई फल हो और बहोत सारे आदमी आते जाते दिखाई दे रहे हैं। बहोत सारी --

ट्रैंगल शेप में डिज़ाइन बनाया गया है लाइट जल रही है।

लादी के तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दो ने लाल रंग की टी-शर्ट पहन रक्खी है। एक ने लाइट रंग की टी शर्ट पहन रक्खी है। ऊपर की तरफ हल्का सा आसमान का भी झलक आ --

लगाया हुआ है जो कि सफ़ेद रंग का है और यहाँ पर मुझे लोहे की छड़ स ऐसे नींव दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका दरवाजा दिखाई दे रहा है। एक मजार सा यहाँ पर बना हुआ ऊपर की तरफ गुम्बद बना हुआ --

मुझे यहाँ पर एक प्लेट एक तसले में बहोत सारी मछलियाँ दिख रही हैं। मछलियों का रंग काला-काला सा है। कुछ ऐसे साँप की तरह मतलब लग --

साप की तरह दिख रहे हैं। उनमें मूछें भी हैं और एक लड़के का हल्का सा स्किन भी दिख --

और अंदर की तरफ बोहोत सारे हा हरे और सफ़ेद गुब --